यह एक होटल है यह होटल बाहर से देखने में अत्यंत सुंदर है तो सोचिए अंदर कितनी खूबसूरती होगी।

और भी समान मिलते हैं यह दुकान में सिर्फ गाड़ियों का ही समान भरा हुआ है।

यह एक नाई की दुकान है यह नाई की दुकान में एक नाई रहता है।

यह एक ऑफिस है यह ऑफिस में सभी के केबिन में एक-एक --

लैपटॉप रखी गई है और सब के केबिन में डींग लगी हुई है यहाँ पर बहुत से स्टाफ काम करते हैं और यहाँ --

यह एक रेस्टोरेंट है। यह रेस्टोरेंट --

यह एक जिम सेंटर है यह जिम सेंटर में प्रत्येक दिन लोग यहाँ बॉडी बनाने के लिए आते हैं अपना मोटापा घटाने के लिए आते हैं और यहाँ पर सभी आकर सेहतमंद होते हैं।